आर सब हे में बहुत सारे क्लीपे लगे हुए है लाल कलर के | स्प्रे बॉटल दिख रही है एक कलर गार्नियर की कलर दिख रही है और भी समाने--

बोर्ड जो की दो-तीन बोर्ड दिख रही है लाइटे वगैरा दिख रही है। पानी की टंकीया भी दिख रही है। कुछ बॉस वगैरा भी दिख रही है। पोस्टेरे वगैरा भी लगे हुए है। पेड़ वगैरा भी देख रहा है। आसमान भी देख रहा है ।

छोटे पत्थर वगैरा भी दिख रहे है रोशनी भी आ रही है।